यह एक गाड़ी का दुकान है जिसके बाहर बहुत से रंग बिरंगे गाड़ी भी है।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

उस पंडाल के बगल में बहुत सारे बिल्डिंग भी है।

जिसके ऊपर यह केक रखा गया है और पीछे में एक दिवाल भी है।

और उसके बगल में एक पीला कलर का टेबल भी है।

यह एक दुकान का दृश्य जहां पर एक स्कूटी भी लगा हुआ है।

और दुकान का रंग व्हाइट और ब्लू में है।

यहां पे बल्ब भी है व्हाइट कलर --

यहां पे बहुत सारे लाइटें भी लगी हैं यह घर के बाहर एक आदमी क्रॉस कर रहा है।

और इसके बाहर बहुत सारे खिड़की भी है।

इस दुकान के अंदर एक पंखा भी है और बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक भी है ।

यह एक माल का दृश्य है जहां पे बहुत सारे आदमी सामान खरीद रहे हैं।

जिसके बगल में लात शुभ लाभ लिखा गया है।

और सामने में बहुत सारे फूल पौधे हैं और बहुत सारे गंदगी भी है।

और यहां पे बहुत सारे बाइके और आदमी भी है।

और यहां पे एक आदमी बाइक चला रहा है जिसके पीछे एक औरत बैठी हुई है ।

और इस दुकान में बहोत सारे बैलून भी लगाए गए--

और यहां पे बहोत सारे टाइल्से भी लगाए गए हैं और यहां पे बहुत सारे हरे भरे पेड़ पौधे भी--

यहां पे बहुत से गंदगी भी है।

यह एक दुकान का दृश्य है जहां पे बहुत सारे कपड़े हैं।